ये फोटो एक बड़ी सारी भव्य इमारत का नजर आ रहा है जो कि पूरी हरे कलर की है इसके सामने दो--

ये चित्र एक घर का दिखाई दे रहा है जो कि पीले कलर का है इस घर के बाहर सफेद कलर की एक कार खड़ी हुई है।

इस चित्र में एक छोटी सी दुकान सी दिखाई दे रही है।

अमारियों में अलग अलग किस्म के बर्तन नजर आ रहे हैं नीचे की जमीन सफेद है यहाँ लाइट लगी हुई है।

सामने मेन काउंटर पे भी लोग बैठे हुए हैं एक आदमी फोटो लेता हुआ इस चित्र में दिखाई दे रहा है।

ऊपर रखे हुए दो लैंप दिखाई दे रहे हैं एक सफेद कलर का लैंप है जो जल रहा है।

ये चित्र एक छत एवं टेरेस से लिया गया है टेरेस की सीलिंग स्टील की है नीचे काफी सारे बे पेड़--

और बिल्डिंग घर दिखाई दे रहे हैं पेड़ हरे कलर के बड़े बड़े सारे हैं।

ये चित्र एक दुकान का दिखाई दे रहा है जहाँ पर छत के ऊपर एक फैन अथवा लाइटें दिखाई दे रही हैं बड़ी सारी अलमारियां हैं।

ये गाड़ी एक रोड पे खड़ी हुई है आस पास सफेद बिल्डिंग और आगे बहुत सारे लोग।

अथवा सफेद कलर का पजामा पहना है एक बच्चा ऊपर रेलिंग पर खड़ा है।

ये चित्र एक बैंक के बाहर का नजर आ रहा है जिसके ऊपर एच_डी_एफ_सी बैंक नीले कलर के बैनर पर लिखा है बैंक के ऊपर--

ये चित्र एक बिल्डिंग के बाहर का दिख रहा है बिल्डिंग कच्ची एवं सफ़ेद कलर से पुती हुई नजर आ रही है इसके बाहर --

जो क्वेलुयों से इसकी छत बनाई गई है कत्थई कलर की ये छत है।

दुकान के बाहर काफी सारी मोटर बाई बाइसाइकल दिखाई दे रही है एक गार्ड सफेद कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट --

जमीन इसके ऑरेंज कलर की नीचे अथवा कत्थई कलर की नजर आ रही है मंदिर पे घंटी लटकी हुई सी नजर आ रही है।

ये चित्र एक छोटी सी साइकिल की दुकान का दिख रहा है यहाँ पर बड़ा सारा कत्थाई कलर का काउंटर है।

जिस पर छोटे बच्चों की लाल दो तीन साइकिल दिखाई दे रही हैं नीचे खड़ी हुई हर साइज साइज की साइकिल यहाँ पर दिख रही है।

इस चित्र में कच्ची जमीन पर छोटे से पौधे दिखाई दे रहे हैं पौधों में कई कलर के फूल खीलते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं।

इन स्टम की बाउंड्री करी गई है आसपास काफी सारी हरियाली हरी घास दिखाई दे रही है।

ये चित्र एक बड़े सारे जेजे हॉस्पिटल के नाम से दिखाई दे रहा है जो कि सफेद कलर की बिल्डिंग में बना है कांच की इसकी काली खिड़कियां दिख रही हैं।

सामने एक टेबल रखी है अथवा छोटे बैग --